झूले पे बैठे हुए है और ये झूले में मतलब झूल रहे है।

ग्राउंड के आगे में एक बड़ा सा पोल टाइप का है जिसपे कि लाइट लगी हुई है।

आ यह तस्वीर एक उम उम रोड पर से सॉरी एक रास्ते से ली गयी है। जहाँ जिसके बगल में अगर देखा जाए एक बड़ा सा बिल्डिंग हैं।

दो तीन चार गाड़ियाँ लगी हुई हैं। साइकिल है बगल में और उसके बगल में एक पेड़ है।

वहाँ पे एक ऊपर में देखा जाए तो एक घड़ी बना हुआ है जोकि दोनो तरफ से मुझे दिखाई --

और बॉक्स की हैजोकि कह सकते हैं हम किसी संदूक की है जिसके अंदर मे कुछ रखा गया है ।

जगह की ली गयी है जहाँ पे हम देख सकते है काफी सारे बास लगे हुए हैं। ऊपर से साट्रिंग लगाई हुई गई है।

ओ झांझा अ अगर थोड़ा आगे जाए-जाए तो झंडा तोलन के लिए जो बना होता है स्तम्भ टाइप का वो बनाया है।

आ फीमेल्स और मेल्स हैं | यहाँ पे लेडीज आगे में हुईहै जोकि एक पैर को ऊपर करके और हा दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर करके --

बना हुआ जिस पे लिखा हुआ है में आई हेल्प यू उसमें एक बन्दा बैठा है। उसके बगल में --

वो अपने दोनों पैरों को एक पैर जिसको उठाया हुआ है और एक पैर अ उसका लेटा हुआ ही है। देखा जाये दोनों तरफ से इसके पैरों के घुटने पे जो है --

यहाँ पे देखा जाये काफी सारे अ गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे।

अ लगी हुई है यहाँ पे काफी लोग भी हैं बाहर में गाड़ियां बहुत ज्यादा है और पेड-पौधे है आगे में देखा जाये एक बड़ा-सा बिल्डिंग है जोकि --

जोकि दो महल्ला है। इस बिल्डिंग के नीचे में काफी सारे बाइकस लगे हैं। ऊपर में एक एच.डी.एफ.सी. बैंक का --

बड़ा सा बैनर लिखा अ लगा हुआ है जो की इंग्लिश में लिखा हुआ हैं। उसके साइड में दुसरे भाषाओं में भी ये --

जो कि सड़क पे लगा हुआ है।